एक दम ध्यान से देखेंगे सामने तो आधा फोटो कार का आया है वहां से क्रॉस कर रहा है।

पैन कार्ड का और एक बाइक खड़ा है और एक चाचा वहां से आ रहे हैं।

गैराज का फोटो हैं जहाँ पे एक आदमी बाइक बनाने आया हैं ।